बाटा का शोरूम है ओर शोरूम मे अब तक हा लाल कलर का है फूल भी लगा हुआ है उजला भी लिखा हुआ है।

एक लेडिज खड़ी है सामान ले रही है एक दुकानदार सामान दे रहा है दूध का भी पैकेट दिख रहा है मंगल दूध किराना स्टोर --

नारी शृंगार स्टोर हैं यहा पे जो है कुछ चिप्स का भी फोटो लगा हुवा हैं।